कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं।

यहां एल_इ_डी टी_वी लगी हुई है।

कोई भी पब्लिक नहीं दिख रही है।

प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाया जा रहा है।

एक कच्ची रोड दिख रही है।

ये बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

यहां लोग आते हुए दिख रहे हैं। यहां--

जो कि चारों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारे हिरण दिख रहे हैं।